और एक टाली जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जो कि एक सीधा रोड है अगल बगल बहोत सारी टाइल्स लगाई गई है ऊपर एलईडी लाइट लगाई गई है।

यहाँ पर एक सीधा ग्राउंड जैसा कुछ दिखाया जा सकता है जहाँ पर एक पानी रखी हुई है अगल बगल में चट्टानें रखी गई हैं।

नीचे कुछ पथ्थरे दिखाई दे रहे है जिसमे से होकर के पानी नीचे गिर रहा है ऊपर नीला आकाश साफ तोर पे देखा जा सकता है।

और सामने ही एक अगरबत्ती जलाई गई है उसके बगल मे भी एक मोमबत्ती है अगल बगल बहोत सारी लाइटे वगेरह जल रही है।

सामने ही बहुत सारे लोग मंच पे दिखाई दे रहे है अगल-बगल भी बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है और ऊपर बहुत सारी पाइपें लगी हुई है। यह देखने में बहुत ही सुन्दर व मनमोहक दृश्य लग रहा है।